यह जगह देखने में तो फल मार्किट की तरह लग रहा है काफी यहाँ फल --सरा रखा गया है जो की यहाँ आदमी सब जो बेच रहा है वो सब भी दिख रहा है इन लोग जो अपने सेफ्टी के लिए मास्क लगया गया है वो भी बहुत ही अच्छा से काम किया गया है ।

मास्क भी लगना भी एक जरूरी है अभी के समय में यह जगह बहुत अच्छा दिख रहा है बहुत खूबसूरत जगह दिख रहा है।

कुर्सी में बैठे है लड़का है वो भी शायद अपना दाढ़ी बनाने के लिए बैठे हैं। लड़का जो खड़ा है वो भी शायद अपने काम के लिए खड़ा है ताकि लाइन में हम भी अपना काम कर ले।

इसलिए ट्रेक्टर यहाँ पर खड़ा है ट्रेक्टर के आगे पर जो पेड़ है वो पेड़ भी बहुत अच्छा सा हरा-भरा है ये पेड़ में देखने में भी पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है उस ट्रेक्टर की यहाँ चाभी बहोत ।

ये देखिए दुकान कितना अच्छा दिख रहा है। दुकान में सामान भी बहुत अच्छा-अच्छा है जोकि यहा पर दुकान की ये जो सामान है वो सामान बहुत अच्छा-अच्छा है। देखिए जग है इसमें बाल्टी है और भी सामान है जो सामान काफी देखने में बहोत अच्छा-अच्छा सामान है। बोर्ड है।

वो साइड में जॉन खड़ा है उस साइड में इंजिनर की तरह इंजीनियर ही होगा जो की काम जोकि काम दिखा रहा है के--

इसमें काफी सारा सामान भी यहाँ बेचने के लिए आया है काफी आदमी भी यहाँ पर देखने के लिए आया है जो की इस लाइट में बहुत ही खूबसूरती इस जगह की दिख रही है।